लिबर ऑफिस calc में data के साथ कार्य पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
fill tools और selection lists का उपयोग करके गति बढ़ाना
शीट्स में content बाँटना
data हटाना data को बदलना data का भाग बदलना
यहाँ हम अपने operating system के रूप में gnu/लिनक्स और libreoffice version 334 का उपयोग कर रहे हैं
spreadsheet में data एंटर करना श्रम गहन हो सकता है लेकिन इसको आसान बनाने के लिए calc विविध tools प्रदान करता है
सबसे बुनियादी क्षमता है कि mouse के साथ एक से दूसरे cell में contents को drop और drag करना
लेकिन calc स्वचालित input के लिए विविध अन्य tools भी सम्मिलित करता है विशेषतः दोहराई गई चीजों के लिए
यह fill tool selection lists नामक tools हैं
ये एक ही document की multiple शीट्स में जानकारी input कर सकते हैं
हम उन प्रत्येक के बारे में एकएक करके सीखेंगे
चलिए अपनी personalfinancetracker ods file open करते हैं
fill tool fill tool sheet में contents की अनुलिपि के लिए एक उपयोगी पद्धति है
हमारी personalfinancetracker ods file में मानिए कि हम cost heading के तहत data को निकटवर्ती cells में copy करना चाहते हैं
तो पहले cell पर क्लिक करके पूर्ण data चुनें जिसे copied करने की आवश्यकता है जिसमें entry 6000 है
अब बायें mouse button को पकड़कर रखें cell के अंत तक mouse को drag करें जिसमें लागत entry 2000 है
और वह cells भी चुनें जहाँ हम data copy करना चाहते हैं
अब बायें mouse button को छोड़ दें
menu bar में edit option पर click करें और फिर fill option पर click करें
popअप menu में right option पर click करें
आप देखेंगे कि heading cost के नीचे data निकटवर्ती cells में copied हो गया है
बदलावों को undo करें
fill tool का अधिक जटिल उपयोग यह है कि शीट्स में data की कुछ श्रृंखला fill करने के लिए इसका उपयोग करना
calc सप्ताह के पूर्ण और संक्षिप्त दिनों और साल के महीनों के लिए default रूप से सूची प्रदान करता है
यह उपयोगकर्ता को उसकी स्वयं की सूची बनाने के लिए भी सक्षम बनाता है
अब अपनी sheet में days named एक now heading प्रविष्ट करते हैं
इसके नीचे हम स्वतः सप्ताह के सातों दिन प्रदर्शित करेंगे
days heading के नीचे पहले सात cells चुनें
अब menu bar में edit option पर click करें और fill option पर जाएँ
menu में series option पर click करें
आप देखेंगे कि fill series heading के साथ एक dialog box दिखाई देता है
अब series type heading के नीचे autofill option पर click करें
start value field में हम सप्ताह का पहला दिन type करते हैं जो sunday है
बढ़त 1 के रूप में पहले ही set है
अब ok button पर click करें
आप देखेंगे कि दिन अपने आप ही cells में एंटर होते हैं
आप उसी पद्धति से केवल सप्ताह के दिन महीना या साल enter कर सकते हैं जैसे कि वे calc में पूर्वपरिभाषित हैं
अनुक्रमिक data के autofilling के लिए अन्य पद्धति निम्न प्रकार है
cell में sunday type करें और enter press करें यह column में अगली cell पर focus करेगा
उस cell पर वापस जाएँ जहाँ sunday टाइप किया था अब आप cell के तल में दायें कोने पर एक छोटा काला box देखेंगे
इस box पर mouse से click करें
इसे नीचे की ओर तब तक drag करें जब तक आप दाईं ओर पर प्रदर्शित box में saturday न देखें
mouse button छोड़ दें
स्वतः ही सप्ताह के दिनों से cells filled हो गए हैं
यह तरकीब सभी data के लिए कार्य करती है जो अनुक्रमिक हैं बदलावों को undo करें
आप start end और बृद्धि values एंटर करके numbers के लिए one time fill series भी बना सकते हैं
इसे प्रदर्शित करने के लिए पहले हम cells में a1 से a7 तक पहले से एंटर किए गए serial numbers को डिलीट करेंगे
numbers को डिलीट करने के बाद cells a2 to a7 को फिर चुनें
अब menu bar में edit पर click करें और फिर fill और series option पर click करें
हमारे सामने एक dialog box दिखाई देता है अब series type heading के नीचे linear option पर click करें यदि यह default रूप से चयनित नहीं है
start value field में हम पहला serial number type करेंगे जो कि 1 है
end value field में हम आखिरी value type करेंगे जो कि 6 होगा
अब हम increment value 1सेट करते हैं और अंत में ok button पर click करते हैं
हम देखेंगे कि अनुक्रमिक serial numbers के साथ cells स्वतः filled हो गई हैं
इन सभी केसेस में fill tool cells के मध्य केवल क्षणिक संपर्क बनाता है एक बार वे fill हो जाती हैं तो cells का एक दूसरे से आगे कोई संपर्क नहीं होता
fill tools के अलावा यहाँ गति वृद्धि के लिए एक selection lists नामक अन्य tools है जो कि केवल text के उपयोग के लिए सीमित है
हम इसकी चर्चा इस क्रम के बाद के टूयटोरियल्स में करेंगे
fill tools और selection lists के share में सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि शीट्स के बीच content कैसे बांटें
calc उपयोगकर्ता को multiple शीट्स पर समान cell में समान जानकारी enter करने के लिए सक्षम बनाता है
अर्थात प्रत्येक sheet में व्यक्तिगत रूप से समान सूची enter करने के बजाय आप इसे सभी शीट्स में एक ही समय enter कर सकते हैं
अपनी personalfinancetracker ods file में हमारा संपूर्ण data sheet 1 पर है
अब हमें sheet 2 में समान data दिखाने के लिए sheet 2 साथ ही साथ sheet 3 चाहिए
अतः हम menu bar में edit option पर click करते हैं और फिर sheet option पर click करते हैं
अब select पर click करें
अब दिखाई देने वाले dialog box में shift की का उपयोग करके हम sheet 1 sheet 2 और sheet 2 options को चुनते हैं
और फिर ok button पर click करें
यह हमें वापस sheet 1 पर लाता है
अब sheet 1 में कुछ data enter करते हैं
उदाहरणस्वरूप f12 cell में हम this will be displayed on multiple sheets type करेंगे
tab एक के बाद एक sheet 2 और sheet 3 टैब पर click करें
हम देखेंगे कि इन प्रत्येक शीट्स में cell f12 समान data सम्मिलित करती है
बदलावों को undo करें
आगे हम विभिन्न तरीकों के बारे में सीखेंगे जिनमें हम cells में data डिलीट और edit कर सकते हैं
cell के किसी भी फॉर्मेट को हटाए बिना data को डिलीट करने के लिए केवल cell को चुनें
आप देखेंगे कि cell का data input line field में दिखाई data है
अब keyboard पर backspace button press करें
आप देखेंगे कि data डिलीट हो गया है
बदलावों को undo करें
cell में data बदलने के लिए साधारणतः cell को चुनें और पुराने data के ऊपर type करें
नया data मूल formatting को बनाए रखता है बदलावों को undo करें
cell में पूर्ण contents को हटाए बिना data का भाग बदलने के लिए केवल cell पर double click करें
अब cursor की मदद से आप अपनी आवश्यकतानुसार cell को edit कर सकते हैं
बदलावों को undo करें
अब हम लिबर ऑफिस calc पर spoken tutorial के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में हमने निम्न बारे में सीखा
fill tools और selection lists का उपयोग करके गति बढ़ना
शीट्स में content बाँटना
data हटाना data को बदलना data का भाग बदलना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
spoken tutorial project team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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact @spoken hyphen tutorial dot org पर संपर्क करें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
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आईआईटीबॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद